नीचे भी कुछ पौधे हैं और साइड में भी कुछ पौधे है और ऊपर एक छत भी रखी हुई है हरे कलर की।

और साइड में एक ढोलक भी रखी हुई है।

कुछ जीना भी है दो तीन थाने खड़े हुए।

और एक मेज पर कुछ पौधे भी रखा हुआ है और कुछ मूर्तियां भी है।

और पीछे कुछ लाल कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं।

और मालाएं भी दिखाई दे रही है।

और साइड मे एक ब्लैक कलर का डब्बा भी रखा हुआ है।

झोपड़ी के सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत सुंदर घर है और इस घर के दरवाजे के सामने कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जिम में कुछ पंखे में लगे हुए है।

अउर एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।